जोकि अपना कुछ मेकअप करवाने आये हैं यहाँ पे एक काउंटर बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे एक आंटी हैं जो एक--

भैया खड़े है जो पीछे से मिरर दिखा रहे है।

हलो गाइस देखिये हम लोग एक गार्डेन में आ चुके है जहाँ पे दो चेयर्स है।

आप लोग यहाँ पे एक बार जरूर आ के कॉफ़ी आप लोग भी पी सकते हैं यहाँ पे कॉफ़ी मशीन लगा हुआ है।

जोकि कापी देखने में अच्छा लग रहा है यहाँ पे काफी डेकोरेशन किया गया है जोकि बहोत सारे लोग यहाँ पे कपल्स लोग आ चुके हैं।

जोकि आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा एक सूज पेहनी है जोकि फ्रोक फ्रोक इसका लग रहा है की उड़ जाऐगा हवा में --

जो कि जो कि कुछ समझ नही आ रहा है की केसा डांस कर रही है लेकिन जो भी है लड़की बोहोत मस्त है।

भईया जो है जो की ऊपर से सिढ़ियों से अ निचे आ रहे हैं यहाँ पे बोहोत सार्रे एक ब्लैक क्लर की थार लगी है।

और दो सिंगल सिंगल है जोकि बहुत प्यारा लग रहा है देखने में।

यहाँ पे काफी सारा पीछे में वाटरपार्क जैसा कुछ दिख रहा है।

तो गाईज आप लोग आ चुके हैं यहां पे एक लाइब्रेरी है जहां पे लोग बैठ सकते हैं यहां पे बहोत सारा--

पढ़ने लायक यहाँ पे यहाँ पे एक वाँच लगा है यहाँ पे बंदर मोंकि प्लास्टिक का जो अच्छा सा डेकोरेशन किया गया है।

यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे कितना प्यारा नजर है यहाँ का नजर--

हो गया है यहाँ पर पेड़ पौधे इतने दिखने में प्यारे लगे है यहाँ पर एक बोहोत सारा प्यारा प्यारे लाइट लगे है यहाँ स्प्रिल वाले --

अँ जो नल्स है वो भी लगे हुए हैं यहाँ पे एक छोटा सोलर लगा हुआ है।

में आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहोत सारा अच्छा एक बेकरी है जोकि--

जोकि देखने में बहोत प्यारा लग रहा है आप लोग देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं पीले कलर में--

ड्रोईग बना हुआ है जोकि दिखने में में अच्छा लग रहा है यहाँ पे बहुत प्यारा--

एक यहाँ पे बड़ा प्लांट है जोकि बहोत लम्बा दिखने में लग रहा है यहाँ पे लाईट ओईट लगा हुआ है।

यही किसी चीज़ का दूकान है जो आप लोग आ सकते हैं एक बार मार्केट में आप लोग भी जाते होंगे तो देखे होंगे।

आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक दादाजी भी आ गए हैं एक अंकल भैया लोग--

उम्म बार-बार लोग बाल काट रहे हैं एक भैया का दाढ़ी बना रहे हैं।

क्युंकि एक भैया के दाढ़ी लग गया है अम आप लोग लगा च वो लोग लगा दिए हैं।

उम आ सकते हैं बच्चो आयेंगे तो बोहोत एक्साइटेड होंगे जो भी घर पे बोर हो रहे हैं बच्चों आएं यहाँ पे आप लोग ले के आइए।

काफी सारे आप लोग बैठ के बात ओत कर सकते हैं यहाँ पर बच्चे मस्ती भी कर सकते हैं।

जोकि देखने में चारों तरफ हलयाली दिख रही है यहाँ पे एक छोटा सा पेंन है।

जो की आप लोग देख सकते हैं कोई साइकिल चलाते हुए एक अंकल बाइक चलाते है यहाँ पर एक कार लगा हुआ है।

बहोत देखने में आप लोग साइड से लगा हुआ है एक अपार्टमेंट है जो की--

यहाँ पे उम्म कोई-कोई उम्म ब ब्लैक है कोई वाईट है जोकि बहोत --

हेल्लो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा दुकान है जो कि यहाँ का चिप्स विप्स रखा हुआ है जो कि यहाँ पे स्प्राइट उस्प्राइड का बोतल माजा ओजा रखा हुआ --

यहाँ पे कुरकुरे चिप्स वीप्स रखा गया है आप लोग देख सकते है।